इस तस्वीर में हमे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की सफेद रंग की टी-शर्ट पहना हुआ है।

बस एक इस तस्वीर में हमें एक महिला दिखाई दे रही है जो की नेत्रों की डॉक्टर है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़े से कारखाना दिखाई दे रहा है जिसकी छत टीन से बनाई गई है।

इस तस्वीर में हमे एक खा बिस्किट बनानेवाली फैक्ट्री दिखाई

इस तस्वीर में हमें एक मजदूर दिखाई दे एक इंजीनियर दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ है।

वह दो मजदूर हैं जो कि इन बोरियों को एक के बाद एक उठा-उठा के एक ट्रक में भर रहे हैं व एक व्यक्ति और नजर रहा है जो ट्रक के अंदर खड़ा हुआ है।

वह सारे बच्चों की डॉइ ड्रॉइंग की क्लास है। वह सब अपने-अपने सफेद रंग के कागजों पर कुछ-कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे है।